यहाँ पर बहुत सारे फ्रिज जो रखे हुए है बड़े-बड़े रखी हुई है।

यह देखने में बहोत सुन्दर लग रही है।

बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है बहोत सारे ऑटो भी है।

बिन की बिन की ब--

यहां पे एक लड़का नीचे लेटा हुआ है।

और कुछ फोर व्हीलर खड़ी हुई है और कुछ गाड़ियां खड़ी है लाइन से--